और वह उनको चिर रहा है।

और सामने एक ट्रे सी भी रखी है।

और उसके नीचे कुछ समान सा भी पड़ा है।

और यहां पे कुछ सोफे भी रखे हुए हैं।

और एक आदमी का चेहरा छुपा हुआ है।

यहां पे कुछ चॉकलेट सी पड़ी हुई है।

और नीचे कुछ पेड़ से भी लगे हैं।

और उसके बराबर में ग्रिल भी लगे है।

और इनका खेने का सामान रखा है।

और सामने एक लाल कलर की टंकी है।